ये रोड है सामने ठेला है उसमे मछली मरी हुई पड़ी है एक टब है उसके ऊपर ब्लू कलर की शीट पड़ी हुई है।

पोस्टर लटका हुआ है इसमें काफी साली अलमारियां है जिसमें पंथजली के काफी सारी प्रोडक्ट है।

यहाँ पे काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और कुछ लोग बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं।

खड़े हुए हैं सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं।

और इसके पेड़ के बराबर में नदी है।

यह कोई दुकान है। जिसमें गाड़ी में हवा भरते हैं। यहां पे सामने खटिया है खटिया के ऊपर।

ये दुकान है दुकान के अंदर अलमारी है इसमें काफी सारे खिलौने लटके हुए हैं गाड़ी है बैट हैं।

सामने मकान है नीचे जमीन है।

बराबर में पेड़ दिख रहा है तारे दिख रही है ऊपर पानी का टैंक है।

ये इंटरनेशनल स्कूल का गेट है बाहर रोड है बराबर में पानी है आसपास पेड़ पौधे हैं।

गेट खुला हुआ है। नीचे रंग बिरंगे फूल है।